यह एक चिकन वाले की दुकान है इस दुकान के बाहर एक लाल कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

और अंदर व्यक्ति बैठे हुए हैं। पोस्टर लगे हुए हैं।

पांच केक रखे हुए हैं स्टूल पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

एक स्वागत का पोस्टर लगा हुआ है बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं डेकोरेशन कर रखी है।